एक कूलेदान की टैंपू खड़ा है और एक सामने एकएंबेसडर खड़ी है एंबेसडर कलर --

एक बहुत बड़ा सा सीरनी जैसी लग रही है सीरनी के अंदर बहुत बड़ी सी एक लेक है लेक के अंदर बहुत सारा पानी है पानी के अंदर तो।

का जो नाम लिखा हुआ है ब्लू कलर से लिखा हुआ है स्टॉक का पूरा नाम है कंपनी इसकी दुकान का अखिलेश एंटरप्राइजेस .

और इसमें बहुत सारी वॉल्स है वॉल का सबका कलर वाइट है और वॉल पे बहुत.

लोग खड़े लोग खड़े हुए हैं आ जाएगा बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

पेल्ड दिख रहे हैं और ट्री दिख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है बगीचा फैमिली रेस्टोरेंट .

और बॉक्सेस आई थिंक रेक्स फोर फाइव रेक्स है फोर फाइव रेक्स है वाइट कलर के बॉक्स पड़े हैं एंड इसका फ्लोर ऐसे लग रहा है जैसे बहुत क्लीन फ्लोर है ग्लास की तरह चमक रहा है।

आई थिंक एक कोई लैब लग रहा है जहां पर लोगों का टेस्ट होता है।

ये सारी फिशेस सेल होती हैं और ये बहुत बड़ी-बड़ी फिशेस लग रही हैं और फिशेस का कलर ग्रे लग रहा है और सारी फिशेस ये डेड है।

और बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है इसके नीचे आई थिंक एक शॉप है शॉप में बहुत अच्छा कोई लिखा हुआ है इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है।

एयर पैड पड़े हुए हैं किसी में एयरपोर्ट पड़े हुए हैं और सारे सामान बहुत अच्छा लग रहा है उन सामान के बहुत --

का कलर ब्लू कलर है कुछ बॉक्स का वाइट कलर है और एक शीशे के रैक लगी हुई हैं।

येलो कलर की है दीवार की येलो कलर पे एक ब्लैक कलर का टीवी लगा हुआ है।

एक बहुत बड़ा सा जिम लग रहा है इसमें बहुत सारी सी मशीनरी पड़ी हुई है इन सब मशीनों पे लोगों लोग आकर एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी डेवलप करते हैं।

वो लगा रखा है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पर वो पर्पल शनील का बना हुआ है और बहुत सारे पेपर स्ट्रिप लगी हुई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है वो बहुत वो एक उसकी लग रहा है किसी टाइप की शॉप है।

और उसके दो हाथ हैं और उसका कलर अनफि उसका कलर बहुत ब्लैक है और उसकी चेक कलर की शर्ट का कलर वाइट एंड ब्लैक कलर का है जो बहुत अच्छी लग रही है।

बाइक्स बॉयज की बहुत फेवरेट बाइक्स होती हैं और यहाँ पर एक टेबल ही पड़ी हुई है और एक फ्लोर पे इसमें बहुत सारी लाइटिंग हो रही है।